एक गेट खुला है और एक बंद है जिस गेट का कलर चॉकलेटी है।

यह एक शॉप है इस शॉप के अंदर एक कार खड़ी हुई है जिस कार का कलर ग्रे है और इसकी लाइटें लाल है और इसमें एक मिस्त्री काम कर रहा है।

और एक बोर्ड भी लगा है और इसके अंदर दो व्यक्ति है एक बाल काट रहा है और दूसरा फोन से वीडियो बना रहा--

और इसमें हल्के ठीक सामने कुछ छोटी छोटी पेड़ियां भी बनी हैं और एक व्यक्ति उन पेड़ियों पर चढ़ रहा है।

यह एक बड़ा सा घर है जिसमे काफी लाइटे लगी हुई है।

और इस दुकान के अंदर परफ्यूम भी रखा है और इसमें काफी सामान है।

और नमकीन के डब्बे भी इसमें रखे हुए है और इसमें शीशे का काउंटर भी--

यह एक होटल है इसमें दो व्यक्ति है एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है और दूसरा व्यक्ति खड़ा है।

और उन टेबल पे गिलास और जग भी रखे है।

और इस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा है पीले कलर का जिस पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ है।

और इस पिज़्ज़े की दुकान के बाहर एक पिज़्ज़ा विंग्स का काउंटर लगा हुआ है इसके अंदर लकड़ी की चेयर भी धरी हुई है।

गाड़ी के ओर बस भी खड़ी है ओर दूसरी ओर एक कार खड़ी है।